और उस पी.ओ.पी. की लाइट जल रही है और एक अंकल है जो कि बैठे है व्हाइट शर्ट पहन कर।

और टू विलर्स है।

और पानी दिख रहा है नाव चल रही नाव में दो लड़के खड़े है जो कि सवार है।